इतनी बढ़िया गाड़ी है। देखो कितनी बढ़िया पार्क में खड़ी है। इतनी बढ़िया गाड़ी है। इतनी खूबसूरत गाड़ी है।

इतना बढ़िया पार्क है । ये कितना बढ़िया खेत है देखो तो कितना भयंकर बढ़िया खेत है ये ये देखो इसमें इधर दौड़ लगाना चाहिए। इसमें घूमना चाहिए। कितना बढ़िया खेत है ये।

यह देखो यह माला जैसी हमारी जय माला पड़ती है शादी करने जाते हैं तो। कितनी बड़ी माला टंगी हैं देखो गुलाब का फूल है। यह देखो कितनी बढ़िया सफ़ेद कलर लाल कलर देखो ओ हो--